यहां पे बोहोत से लोग खड़े है कई लोग पोस्टऑफिस के अंदर जा रहे हैं यहां पर कई लोग पोस्टऑफिस के बहार खड़े हुए हैं।

यहां एक गुफा है जिसमे एक लड़का फोटो खिचाते हुए नजर आ रहा हैं ये गुफा के थोड़ी अंदर ही --

भाग में है उसके सीधे अंदर जाएंगे तो गुफा का ये बाहरी पोर्शन नजर पे आ जायेगा है यहां पे जहां चोक से कुछ लिखा हुआ है।

यहां पे एक बेंक नजर आ रहा है और बाहर एक गार्ड भी खड़ा है यहां पे बहुत सारी गाडिया खड़ी है कई नीले कलर की कई सफ़ेद की कई काले कलर की बाईक भी खड़ी है।